सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।